और बिही के पेड़ भी लगे हुए है।

और अंदर बहोत सारी कार भी खड़ी नज़र आ रही हैं।

जिसमें दिखाया जा रहा है की ऊपर--

दो लोग फोटो खींचाते हुए नजर आ रहे हैं और मैरिज हॉल का दृश्य--

यह रेस्टोरेंट बहोत ही सुंदर नजर आ रहा है क्योंकि इसमें पेड़ पौधों की सुंदरता--

बहोत ही सुंदर नजर आ रहा है।

सजाया गया है जिसे आसानी में मिल सके।

इसमें सिनेमा हॉल भी नजर आ रहा हैं।

जहां जहां की यू_के_जी क्लास की--

हॉस्टल या पी_जी की फोटो है।